और ब्राउन कलर का इस एंकल लोहे का लगा हुआ है और क उसके बाहर जोमैटो की बाइक नजर आ रही है।

एक पारक नजर आ रहा है पारक में एक लोहे का गेट बनाया हुआ है।

अं मोबा बाइक एजेंसी नजर आ रही है।

पूल बना हुआ है पूल के अंदर से जाकर बहोत ही अच्छी जिसके चारों ओर हरी हरी घास नजर आ रही है बड़े बड़े पेड़ नजर आ--